तस्वीर में सामने की ओर एक जिम नजर आ रहा है।

बगल में एक खंभा है उसके ऊपर एक लाइट जल रहा है।

इस तस्वीर में फैमिनी की ओर एक बहोत बड़ा सीसा नजर आ रहा है।

चार कुर्सी भी नजर आ रहे है और ऊपर की ओर एक बल्ब लगे हुए हैं।

और उसके बगल में चार बोरिया भी रखी हुई है।

और उसके वो बगल में कुछ मिक्सियां के डब्बे भी हैं और डब्बे के नीचे एक कुर्सी भी लगा हुआ है।

कुर्सी पर एक व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं और बहुत सारे साड़ियां भी नजर आ रही है कुछ साड़ियां ऊपर टंगी हुई है।